अ लंबे लंबे अ रोशनी की अ कुछ लाइने दिखाई दे रही है कुछ लाइट लाल दिखाई दे रही है बहुत सारे आदमी बैठे हुए है।

एक लड़का है जो नाव के ऊपर खड़ा है और नाव अ ए अ पानी के किनारे में है।

और सामने एक लिखा हुआ है अ दुमका बस अ पाड़ा है आपका स्वागत है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है।

किले जैसा नजर आ रहा है जिसमे नीचे की और अ सीढ़ि बनी हुई है अंदर जाने के लिए गुफा की और तरफ--

एक सामने एक ग्राहक सेवा केंद्र दिखाई दे रहा है जिसमे लिखा हुआ है इलाहाबाद बैंक जो की है येल्लो कलर से है सामने इलाहाबाद बैंक का लोगो लगी हुई है|